इसमें हमें एक शटर का ऊपर वाला भाग देखने को मिल रहा है जहाँ पर हिन्दी में कुछ लिखा हुआ है और शटर का जो कलर वो है ब्राउन कलर डार्क ब्राउन --

इसमें हम देख पा रहे हैं दो मंजिला बिल्डिंग को जो की बनी हुई है पूरी और उसके साइड में पेड़ है खादी गोदाम ग्राउंड है जो की ग्रीन ग्रीन पूरा अच्छे से बेल सेटल है और बीच में हमें झंडे का बेस दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें देखने को मिल रहे है टाइल्स जो की स्क्वायर शेप में है और उसके बोर्डर बनती जा रही है ग्रीन ग्रीन घासे बीच में एक पाइप देखने को मिल रहा है।

''उस आ टेबल पे रखी हुई है बहुत सी थोप्फिस जो की बॉडी बिल्डर उनपे बने हुए है पीछे एक बोर्ड लगा है बैनर जैसा।''

बड़े बड़े पत्थर भी किनारे पर दिखने को मिल रहे हैं पानी बहता हुआ दिख रहा है पानी में लहरे आ रही है पानी क्लियर नही है।

पिक्चर में हमें दो लडके दिखाई दे रहे है जो की एक जामिन के ऊपर लेटा हैदूसरा खड़ा है थोड़ा झुक कर--

इस पिक्चर में हमें बहोत ही बड़ी आकृति देखने को मिल रही हैं जो की सजी हुई हैं लाइटो से वहाँ पे कुछ लोग भी खड़े हैं जो की सामने की तरफ उस पत्थर की तरफ जा रहा हैं और कुछ डिजाईन हैं लाइटिंग बहोत ज्यादा हो रखी हैं और इसमें नाईट व्यू भी हैं।

पेड़ों के पत्ते हमें लम्बे-लम्बे दिखाई दे रहे हैं एक कोने में।